बाजू में एक और पुल नजर आ रहा है सामने कुछ छड़ियां नजर आ रही हैं पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ काफी हरे-भरे दिखाई दे रहे हैं।

साइकिल रिक्शा नजर आ रहा है साइकिल रिक्शा काले कलर का है साइकिलरिक्शा काफी बड़ा दिखाई दे रहा है इसमें कुछ डस्टबिन रखे हुए हैं डस्टबिन नीले और हरे कलर के हैं डस्टबिन काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं यहां पर काफी सारा सामान रखा हुआ है।

बिल्डिंग है। बिल्डिंग काफी बड़ी दिखाई दे रही है। बिल्डिंग काफी अच्छे से डिजाइन की गई है। बिल्डिंग के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड काले कलर का है। बोर्ड पर अरण्य भवन लिखा हुआ है।

बिल्डिंग हैं बिल्डिंग काफी बड़ी दिखाई दे रही है। बिल्डिंग का कलर सफ़ेद और लाल है। बिल्डिंग पर एक बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड पर डॉक्टर एल.के.बी.डी. कॉलेज लिखा हुआ है। यहाँ पर काफी सारे ग्राउंड दिख रहे हैं।

सिनेमा हॉल लग रहा है सिनेमा हॉल काफी बड़ा दिखाई दे रहा है सिनेमा हॉल की सीलिंग पर काफी सारी लाइट दिखाई दे रही है लाइट का कलर नीला और सफ़ेद दिखाई दे रहा है।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

यहाँ पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है| पेड़ काफी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं| यहाँ पर काफी खुली जगह दिखाई दे रही है।